नीचे टाइल्स पर एक टेबल रखा हुआ है।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

जिसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर इमारते बनी हुई हैं।

भैंस के सामने एक टोकरी रखी है जिसमें भूसा हुआ रखा है।

सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के साइड में तीन बाइक खड़ी है।

बाइक के साइड में एक बड़ा बड़ा सा पेड़ खड़ा है और सड़क बिल्कुल खाली है।

तालाब के पास एक पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के नीचे लकड़ियां रखी हुई हैं।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

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीचे टाइल्स पर कुर्सी टेबल सिलेंडर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में दो आदमी दिखाई गए हैं जो कॉफी पी रहे हैं।

जो नीली चटाई पर रखी हुई हैं।

अंदर दुकान पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में जमीन दिखाई दे रही है जिसे कुछ हिस्सों में खोद रखा है।

जमीन के आस पास कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

साइड की तरफ एक टेबल लगा हुआ है जिसपे दो औरतों बैठी हुई है।

ऊपर की तरफ आसमान जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में फूलों की दुकान दिखाई दे रही है।